और राइट साइड के आगे में एक दुकान है।

दुकान का अंदर में सारे किताबो है।

ये फोटो में सुंदर सा रूम दिखाई दे रहा--

रूम में सारे चेयर रखा--

सामने में पांच आदमी हैं।

साइड में दो दो शेर हैं।